जैसा की इस दृश्य में हं देख पा रहै है ये बहोत बड़ा सा कमरा है यहाँ पर देखिए खिड़की लगी हुई है और लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ --

जैसा की इस दृश्य में देख पा रहै है ये एक मकान बना है यहाँ पर देखिये ऊपर ये रेनिंग बनी हुई है।

यहाँ पर कुछ लोक बही खड़े हुए दिखाई दे रहै है बहोत सारी लाइटी जलीये खंबो पर कुछ पोस्टर चिपके हुए है।

मे दो लकड़िया पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर देखिए कुछ आदमीयो के पैर भी दिखाई दे रहै हैं।

ये यूनियन बैंक का एक बोर्ड लगा हुआ हैं उपर की तरफ भी कुछ बोर्ड लगे हुये है यहाँ पे --

जैसा की इस दृश्य में हम देख पा रहै है ये एक कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है उसके पास एक आदमी खड़े है यहाँ पर एक स --

एक बोर्ड लगा हुआ है और एक लड़की भी खड़ी हुई है तथा जमीन पर बहोत सारे बच--

जैसे की इस द्रिश मे देख पा रहै है ये एक शादी के लॉन है यहा पर देखीये बहोत सुंदर सी--

बहोत सारे लोग दीखाई दे रहे है यहाँ बाहर की तरफ सफेद रंग का एक मोर बना हुआ है |

फ ये एक बड़ा -सा मैदान दिखाई दे रहा है ओर यहाँ पर कुछ--

दृश्य में हम देख पा रहे है ये एक चर्च के अंदर का दृश्य है यहाँ पर देख--

जैसा की इस दृश्य मे हम देख पा रहै हैं ये एक स्टेज बना हुआ है स्टेज पे हरे रंग का मैट बिछा हुआ है सामने दीवार पे एक पोस --

ट्र चिपका हुआ है यहाँ पर देखिये कुछ लडकिया नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है लडकियो ने रंग-बिरंगी साड़िया पेहनी हुई है ठीक --

के और हार और फुलो की माला पेहनी हुई है।

दृश मे हम देख पा रहै है यहा पर देखिये यहाँ एक मकान का निर्माण हो रहा है जिसमे की ये खंबे उठे हुये है यहाँ पर बोहोत सारे गि --

पास मे ही गेट लगा हुआ है यहाँ पर देखिये दिवार पर चित्रकारी करी हुई है एक --

चे की तरफ भी डिज़ाइने लगा हुआ है लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही --

पर की एस बी आई लिखा हुआ हैं यहाँ पर देखिए इसमे एक रिवाली की हार्दिक सुभ--

दृश्य मे हम देख पा रहै है ये एक बहोत बड़ी सी दुकान है जिसमे की देखिये बहोत सारी अलमारिया बनी हुई दिखाई दे रही है सभी अलमारियो मे बहोत सारा सामान रक--

मैइ मॅरीज हॉल लिखा हुआ है यहाँ पर देखिये बॉन्ड्री बनी हुई है लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है।

जैसे की देश मे देख पा रहै है ये एक लोहै के सरियो कि बॉन्ड्री बनी दिखाई दे रही अंदर की त--

तरफ बहोत घने-घने पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर देखिए ये एक बोर्ड लगा हुआ हैं जिसपे नगर पालिका परिषद--

औरत खडी हुई है जो की कुछ बोलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर लाइट भी जल रही है।

छोटी -छोटी सी ग पौधे लगे हुये दिखाई दे रे है जमीन पर हरी -भरी घास लगी है पीछे की तरफ बोहोत बड़े बड़े से पेड़ लगे हुये हैं।

ओर यहाँ पर देखिये अंदर की तरफ कुछ खुर्सीया रखी हुई दिखाई दे रही है बाहर की तरफ भी एक--

ये ओर मटर की फली प्याज ओर भी बहोत सब्जियाँ दिखाई दे रही है।

दृश्य में हम देख पा रहै हैं यहाँ पर देखिये दुकाने बनी हुई है एक दुकान मे एसबीआय --

जैसा की इस दृश्य मे हम देख पा रहै है ये एक मस्जिद का दृश्य मस्जिद मे देखिए ये दु--

दो बहोत ऊँची ऊँची सी मिनारे बनी हुइ है जिसमे की लाइटे जली यहाँ पर खिड़कियां लगी हुई है अंदर से लाइटे --

विशम देख पा रे यहाँ पर देखिये ये एक बहोत बड़ी सी इमारत बनी हुई है जिसमे बहोत सारी खिडकीया लगी हुई दिखाई दे रही है बाहर की तरफ एक --

येसा की इस दृश मे हम देक पारे यहापर देखीए ये एक काऊंटर पे एक सफेद रंग का कपडा रखा हुआ है सामने की तरफ ड्राय --

फिलाल मिर्चीगोभीआलु बहुत सारी सब्जीया रखी हुई दीखाई दे रही है।

कीवी हैं यहाँ पर देखिए कुछ झींगे भी रखे हुए दिख रहै हैं सामने की तरफ बाल्टी रखी--

पर कॉपीया ओर कुछ बोटले रखी हुई है सामने की तरफ एक पर्स टंगा हुआ --

ये पेड़ लगे हुये है यहाँ पर देखिये इसका नाम इस्पाइस पार्क लिखा हुआ है।

सी लगा हुआ हैं और लाइटे भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं सामने की तरफ स्कैनर लगा हुआ हैं।

ये झुलेपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर देखिए पिछे की तरफ बहोत बड़े-बड़े से पेड़ भी लगे हुए है।

चॉकदार खडा हुआ दिख रहा है और एक आदमी भी दिख रहा है बहुत सारी गाडियाँ भी खडी है।

तरह की चट्टाने एसी बनी हुई है बहोत बड़े-बड़े से पत्थर भी पड़े हुए दिखाई दे रहै है यहाँ पर जमीन मे हरी-भरी घास--

सारी सब्जी और फल के ठेले लगे हुये है यहाँ पर देखिये उपर की तरफ--

मछली बेचते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर देखी तराजू भी रख--